एक झोपड़ी भी है सामने में --

जिसमे एक विश्कर्मा भगवान और एक सु शक्ति माँ की मूर्ति रखी हुई है।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

बोहोत सारी खिड़कियाँ भी नज़र आ रही है और यहाँ दूर-दूर तक कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा --

जो की बोटिंग कर रहे हैं।

जो की बहुत भरी हुई है ।

सामने एक पिक्चर नजर आ रही है ऐसा लग रहा है की कोई मनी ट्रांसफर की दुकान है।

मनी ट्रांसफर और ये --

यहाँ पर एक घाट नजर आ रही जिसमे तीन नौके है।

ऑरेंज कलर एंड ब्लू कलर के यहाँ पे बॉर्डर दिये हैं | ऊपर मिनी स्काई कलर की है |

बहुत सारे लाइटे लगी हुई हैं और यहाँ पे एक गाड़ी भी नजर आ रही है ।